कुछ ऐसे पौधे हैं जो इस पार्क को और सुंदर बना रहे हैं।

यह कोई थीम पार्क है इसमें अनेकों राइडें है।

इसपे एक बच्चा तथा एक वयस्क नागरिक खड़ा है जो कि आनंदित होना चाहता है इन राइड द्वारा।

इसके चारों तरफ टाइल्स ही टाइल्स हैं इसमें अनेकों लाइट लगी हैं।

इस चित्र में हमें दो बाइकें दिखाई दे रही तथा एक ठेलिया गाड़ी दिखाई दे रही है।

एक लड़की अपने गन्तव्य स्थान की ओर जाती दिख रही है।

स्कूल के जस्ट सामने अनेकों बाईंस्किल खड़ी हुई है।

बाइसिकल के जस्ट सामने एक हरे रंग का पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक सरोवर है सरोवर के पास एक आदमी खड़ा है जो कि बाइक्स बाइक के साथ है।

आदमी ने एक नीली रंग की जींस एक बेल्ट अथवा एक बैंगनी रंग का शर्ट पहने है।

एक छोटी सी बच्ची भी है इस चित्र में एक टेबल है।

इस समुद्र च तटीय क्षेत्र के उस पर पहाड़ है।

यह किसी मैकेनिक की दुकान है जो की एक बाइक को रिपेयर कर रहे हैं।

इस पार्क के चारों तरफ हरी घास है जो इस पार्क की सोभा बढ़ा रहे हैं।

इसमें अनेक पौधें फूल के लगे हैं जो इस पार्क को सुगंधित कर रहे हैं।

इस रास्ते पे हमें एक लाल टाइल्स का ग्रुप तथा एक काले तथा एक सफेद और कुछ ब्राउन कलर्स की टाइलें भी दिख रही हैं।

इस चित्र में टोटल नौ लोग हैं। दो लोग ढ़ोलक बजा रहे हैं। एक अपना पियानो बजा रहे है।

इसके नीचे मम्मी पोको पैंट्स भी रखा हुआ है तथा टाइल्स भी लगी हुई है।

इसमें अनेक लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि केक लेने आए हैं या केक से संबंधित सामग्री लेने आए हैं।

इस चित्र में हमें तीन कारें दिख रही हैं दो कारें काली हैं।

इसमें एक दुकानदार है जो की काली टी शर्ट व काला चढ्ढा पेहने हैं।

वेडिंग सेरेमनी में अपने को अतिथिगण दूल्हा के जस्ट सामने बैठे हुए हैं।

इस दुकान में अनेकों किताबें रखी हैं तथा मोबाइल के कवर व मोबाइल भी रखे हैं।

इसमें अनेकों कॉपियां भी है इस चित्र में टोटल पांच जन है जिसमें से चार पुरुष तथा एक महिला है।

जिसमे की गोल गोल एक आकृति है जिसमे की बेटी बचाओ का लोगो है।

के सा सामने अनेकों गाड़िया है तथा अनेकों लोग है।

इस चित्र में कुछ सीढ़ियाँ दिख रही हैं जोकि ऊपर की ओर जा रही हैं जोकि काले रंग की हैं तथा कुछ टाइल्स भी दिख रहे हैं जोकि कारे रंग की हैं।

एक हरा बोर्ड है जिसमें कि लिखा है स्वच्छता ही सेवा है।

गाड़ी के जस्ट सामने एक हरे रंग का जिसकी गुमद हरे रंग का है मस्जिद है।

बोर्ड के सामने एक हरे रंग का पेड़ है पेड़ के जस्ट बगल में एक सफेद रंग की कार है जिसमें कि दो पहिए हैं एक हेडलाइट है।

इस भवन में एक ए_सी तथा एक स्पीकर भी है।

इसमें मुख्य रूप से हमें एक लाल रंग का अथवा एक सफेद रंग का वरमाला दिखाई दे रहा है।

यह कोई रेस्टोरेंट है जो कि गड़तंत्र दिवस की थीम पर आधारित है।

इसमें अनेक कर्मचारी हैं जो कि इन लोगों के लिए उनका ऑर्डर तैयार कर रहे हैं।

इसमें दो पानी पीने वाले जार हैं जार के पास एक हरे रंग की बोतल रखी है।